यहां पर हमे एक सिस्टर दिखाई दे रही है जो उनके प्रोजेक्ट देख रही--

इस पिक्चर में हमें मंदिर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें दो बच्चे और एक औरत भी बैठी हुई नजर आ--

यहां पर हमें ट्रैक्टर के टॉयज --

टेबल पर हमें ग्लास प्लेट स्पूंस दिखाई दे रहे हैं।

हरी हरी पौधे और पेड़ नजर आ रहे हैं दूर से हमें एक यूनिवर्सिटी --

इस पिक्चर में हमें बहुत सारी मूर्तियां नज़र आ रही हैं।

ट्वेन्टी फोर हॉर्स इमरजेंसी और भी--

और दो चेयर्स भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस पिक्चर में हमें एक दुकान दिखाई दे रही हैं।